इस पिक्चर में काफी सारे बच्चे नजर आ रहे हैं व्हाइट यूनिफॉर्म में।

इससे यह पता लग रहा है कि यह कराटे सीख रहे हैं और सभी बच्चे मन लगाकर अपना--